ये तो एक मॉल लग रहा है जिसके सामने बाइक खड़े हुए हैं कार भी है दो आदमी पैदल चल रहे है उसके बगल में भी बहुत सारे चीज़ दिख रहे हैं ये कोई बैंक जिसमें फ़ेडरल बैंक या उस के बगल में किसी बैंक का ए.टी.एम. है जहां गॉर्ड बैठा हुआ है सिक्यूरिटी का इन्तजाम है सीसा का मॉल देखने में लगा रहा है ग्रील सब है।

मंदील दो हज़ार पांच में बनाया हुआ लिखा हुआ है हनुमान जी का मंदिल है गिल भी है।